ये आइसक्रीम रखी हुई है जो कि एक ट्रे में है कांच के ट्रे में है और एक प्लेट में रखे हुए हैं जिस में तीन स्पून रखे हुए हैं।

ये मॉल टाइप है जिसमे बच्चो के कपड़े छोटे बेबी के कपड़े भी है बड़े के भी है जितनी भी एज के लिए भी चाहिए ये लोवर टीशर्ट कपड़े है नाइटसूट है।

खड़ा हुआ देख रहा है। दो बच्चे खड़े हुएँ हैं जोकि खेल रहें हैं। ओर ये जो उसमें है रिपटने के लिए है।

इसपे कोई भी बात लिख के आप बता सकते हैं नोटिस ल लगी हुआ है इसपे फेन भी लगा है इसमें। इसमें काफी सारी बैंचे हैं।

सज- ज जो ट्रैन से ये अ अ ये फोटो क्लिक किया गया है।

जो कि रेलवे लाइन ट्रैक है और उ-उसके पास स्टेशन भी है जो कि अ उसके पास मकान भी बने हुए हैं।

ये एक शेरनी है शायद जो कि एक जाल में है।